जो देखने में बहुत खूबसूरत है यहाँ पे देखिये एक भाईसाहब भी हैं जो दिखने में बहुत अच्छे हैं बहुत हैंडसम हैं।

देखिये यहाँ पे मछली बेच रहा है भाई साहब ये देखिये यहाँ पे मछलियाँ गया है वो दाम पूछ रहा हैदेखने में बहुत खुबसूरत है यहाँ पे देखिये हतिया कितना बढ़िया जगह हुआ है यहाँ पे --

एक टेबल पे बैथ कर उम् फूल बना रहा है बहुत अच्छा लग रहा देखने में कितनी खुशहाली है |